उधर भी बहोत सारे आदमी खड़े दिखाई दे रहे है।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

बहुत सारे आदमी उधर खड़े दिखाई दे रहे हैं और यह गोल-गोल चक्कर से --

उधर बहुत बड़ा पहाड़ ओर दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत खाली मैदान लाल सा दिखाई--

और बहोत बड़ा खाली रोड भी नजर--

बहुत बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई--

और बहुत बड़ा दरवाजा भी नजर आ--